एक लाइब्रेरी है जहाँ पर तीन सेल्फे रही है और तीनो रोज में कई सारी पुस्तके रखी हुई हैं।

यहाँ पर दो बच्चे आपस में बैठ कर फोन चला रहे है । एक बच्चे ने अपने एक टांग के ऊपर दूसरी रखी हुई है । उसके पीछे एक बडा सा बोर्ड लगा हुआ है ।

और पास ही तीन कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं।

ऊपर एक बड़ा पंखा लगा हुआ है और चारों तरफ कई सारे चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर कई बच्चे लेटे हैं।

यहाँ पर कई सारे खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक छोटा-सा स्वीमिंग --

बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुयी है और पीछे दुकान पे कुछ व्यक्ति खड़े हुए है ।